चित्र में एक गुफा दिखाई दे रही है जिसमे सामने की तरफ एक व्यक्ति फोटो खिंचवाते नजर जो हरे रंग की टीशर्ट पहना है और काले रंग का चश्मा लगाया हुआ है उस पर से एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

और जितने पीछे अन्दर दिखाई दे रहा है और निचे की तरफ कुछ स्टाल का नजर आ रहा है और बहुत से लोग घुमते नजर आ रहे है व्यक्ति और महिलाएं।

एक व्यक्ति फोटो खिचता नजर आ रहा है पीछे की तरफ नीला असमान में हरे बा सफ़ेद बादल बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे--

इसमें एक पर-- परिणाम दिखाई दे रही मेले का चित्र दिखाई दे रहा सामने की तरफ बहुत सारे मिकी माउस लगे हुए है जहा बच्चे बहुत मस्ती कर रहे है आस पास गुब्बारे भी लगे हुए है।

इस चित्र मे दो-ओओओ लड़कीया फोटो खीचती नजर आ रही है पीछे एक कैफ़े का बोर्ड लगा हुआ है उसके साइड में पीले गुबारे नजर आ रहे है एक व्य--